छोटी छोटी डिज़ाइनस लगी हुई है और बाथरूम में थोड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

नीचे पाइप अः दिखाई दे रहा है वो भी--

और कुछ लोगो ने टोपी रुमाल बांध रखा है कुछ लोगो ने तौलिया रखा हुआ है।

और यहाँ पे एक घर भी दिख रहा है वो भी ग्रीन कलर का दिख रहा है।

यहाँ पर मुझे गार्डन दिखाई दे रहा हैं गार्डन में बहुत सारे फ़्लॉवर रखें हुए--

यहाँ मुझे दुकान दिखाई दे रही है दुकान में बहुत सारा सामान है और--

और दुकान में बहोत सारा सामान रखा है सामान में मुझे पिंक कलर का सामान और ब्लू कलर का और येलो कलर का सामान जा--

और कुछ लोग मकान के सामने खड़े हुए है।

ये खिलौने बने हुए है वो व्हाइट कलर के और जेंट्स ने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है।

यहाँ पर एक दुकान है दुकान कटिंग की है और एक चेयर है चेयर पर एक लड़का बैठा है उसने--

एक नेवी ब्लू कलर की शर्ट पेन रखी है उसका येलो कलर का बेग है।

ये मैदान है मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं यहां पे--

फेट कलर का कुछ बोस सलकर बनरा है उसमे ब्लू कलर का कुछ दिखाई देरा है और मुझे सामने से लाइट दिख रई है।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

यहाँ पे दिखाई दे रहा है बोर्ड भी लग रहा है वाइट कलर का--

और नीचे मैंदान है मैंदान में कुछ पड़ा हुआ है उपर मुझे आसमान भी दिखाई देरा है और पारस में --

और बगल में पेड़ पोधे लगरे है इस साईद मुझे कुछ--

गमले वगेरे भी दिख रहे है और कमरा मुझे वाइट कलर का दिख रहा है और उसमे दिवार भी मुझे वाइट कलर की दिख रही है।

यहाँ पर मुझे लोहे की झाली दिखा दे रही है झाली में मुझे चॉकलेटी कलर --

और जाली के अन्दर मुझे कुछ लोग और कुछ मकान दिखाई देरा है खम्बा दिखाई देरा है।

और सामने मुझे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है एक वा घर एक अम्म चदर का है चदर के घर में एक--

यहाँ पे मुझे पार्क लग रहा है पार्क में मुझे छोटे छोटे--

केंद्र विद्याल लिखाया गया कुछ लोग अंदर जमा हुए है।

कुछ घर भी है और यहाँ पे पेड़ पौधे भी है।

यहां पर मुझे यहां पर मुझे गंगा नदी दिखाई दे रही है गंगा नदी में मुझे ब्रिज भी दिखाई दे रहा है ब्रिज के ऊपर मुझे कुछ लोग--

दो पेड़ पुरे खड़े हुए है एक लाइट का खम्बा भी है खम्बे में तार है।

यहाँ पर मुझे मैदान दिखाई दे रहा है और मैदान में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है में पुरे में काच लगा हुआ--

एक हेलीकाप्टर दिखाई दे रहा है वो वाइट कलर का है और यहाँ पर बहोत सारे खम्बे है खम्बे में कुछ--

यहां पर मुझे दो लोग दिख रहे हैं एक जेंस और एक लेडिस और उस लेडिस ने--

और यहाँ पे पीजेंस खड़े हुए है वो थोड़ा सा दिख रहा है और दिवार में क्रीम कलर की--

रेड कलर का ये छत और यहाँ पर काच लग रहे है बड़े बड़े काच के दरवाज़े --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

यहाँ पर मुझे पानी दिखाई दे रहा है पानी का कलर मुझे ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है पानी--

यहाँ पे मुझे अँधेरा लग रहा है अँधेरे में रोड --

लाइट है पर लाइट जल नहीं रही है अँधेरा है यहाँ पर--